संतरी रंग के फूलों से सजाया गया है।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

सूरज भी डूबता हुआ दिखाई दे रहा है।

पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है जिसके बाहर बहुत सारी --

स्नान करते हुए और पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं।

खड़ी हुई नजर आ रही है बोट पर कई लोग बैठे हुए हैं।

और सूरज डूबता हुआ दिख रहा है।